एक बगीचा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक चट्टान दिख रही है दो व्यक्ति चढ़कर--

इस चित्र में एक ग्रोसरी मार्केट --

दिख रहा है मॉल बहुत सारा सामान रखा है।

लगाया हुआ है।

जिम दिख रहा है बहुत सारी कसरत की मशीनें--

दिख रही है सामने बहुत सारी कुर्सी टेबल --

बहुत सारे पेड़ लगे हैं।

दिख रही है बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत सुंदर--

चित्र बहुत ही सुंदर लग रहा--

इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल--

बहुत ही बड़ा और--

फूलों से सजा हुआ है।

दिख रहा है कुछ लोग खड़े हैं।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा--

इस चित्र में बहुत सारे--

इस चित्र में एक बाइक का पुराना मॉडल रखा--

गाड़ियाँ जा रही--

इस चित्र में विद्यम--